हैं नीचे सिर किये हुए हैं सभी कुछ लिख रहे हैं |

की ग्रीन कलर की मछलियाँ दिख रही है |

एक दूसरा आदमी एक मशीन से उसका पीठ पर मसाज सा करता हुआ दिखाई रहा है।

नीचे हमे पास्टर दिखाई दे रहा है वाइट कलर की दीवाल दिख रही है ।

इस इमेज में हमें एक हमें दो-तीन दुकान दिखाई दे रही है |

एक आदमी बैठा हुआ है जो त-तकली रखे हुए है।

स्टेज पर हमें एक सोफा वाइट कलर का रखा हुआ दिख रहा है ।

एक आदमी खड़ा हुआ है जोकि येलो कलर की उम टी-शर्ट और ब्लू कलर का लोवर पहने हुए दिख रहा है |

रेड कलर का शूज पहने हुए है।

जिसपे लिखा हुआ है ट्रेंड्स और हमें एक कार दिखाई दे रही है इस --